यहा हमे एक छोटा-सा बच्चा दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर की कैप्री और रेड कलर की शर्ट पहने हुए है उनके हाथ में पाइप है और बच्चे अपने घर के आँगन में पेड़ों को पानी देते हुए दिखाई दे रहे है।

जस्ट हमे एक गेट दिखाई दे रहा है जिस गेट के दोनों साइड हमे शेर बने हुए दिखाई दे रहे हैं | उन शेरों के नीचे हमे कुछ जो है मूर्तियाँ डिजाइन की हुई दिखाई दे रही हैं| पार्क के बीचों-बीच एक पोल है।

शॉप में काफी सारी शेल्फ यहाँ पे रखी हुई हैं जिसमें काफी सारा आइटम यहाँ पे अपनी-अपनी शेल्फ में जमा हुआ हैं और एक दीवाल पे हमें टूयबलाइट्स दिखाई दे रहीं हैं।

सामने काफी सारी सीडियाँ है स्कूल की वॉल पर काफी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की गई है और काफी सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ लगाई हुई है।

इसमें काफी सारी छोटी-मोटी बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ भी ल दिखाई दे रही है।

और संतरे रखे है अनार रखे है चीकू रखे दिखाई दे रहे है नीचे एक कैरेट है और एक पानी की बाल्टी दिखाई दे रही है।